और ये बहुत सारे लोग दिख रहे हैं इसमें दो जानवर दिख रहे हैं जो की डॉग्स है पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारे।

यह एक समुन्दर है इसके पास हम्म साइड में पेड़ लगा हुआ है पेड़ भी उम्म समुन्दर में पानी बहुत सारा है।

मशीन के साइड मे एक डस्टबिन रखा हुआ है ए.टी.एम. माशीन मे एक साइड मे झाड़ू रख --

ये एक रूम है जिसमे एक बेड रखा हुआ है ए.सी. लगा हुआ है पर्दे डले हुए हैं।

और बहुत हरियाली दिख रही है पेड़ दिख रहे हैं एक अ बुलेट खड़ी हुई है और उसपे चढ़ा हुआ है और बुलेट सिर्फ खड़ी हुई है उसके आस पास कोई नही दिखाई दे रहा है।